बहोत सारी मिर्च पड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ एक पॉलिथीन रखी है जिसमें जिसमें हरी मिर्चें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर साइड में कुछ फोन कवर भी रख हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में बहुत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है यहां पर कुछ सब्जियों व्हाइट कलर की बोरियों में रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ सब्जियों यहां पॉलीथिन में रखी नजर आ रही है।

यहाँ पर कुछ साइकिल ऊपर टंगी हुई दिखाई दे रही है तो कुछ साइकिल नीचे रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक साइकिल में एक डलियां भी दिखाई दे रही है।